हमें यहाँ पर बोहत सारे पहाड़ दिख रहे है काले - काले कलर के कुछ हमें कीड़े मकुड़े भी दिखाई दे रहे है हमे पेड़ - पौधे दिखाई दे रहे है छोटा सा --

हमे यहाँ पर हरी-ह पीली पीली पत्तीया दिखाई दे रही है हमे यहाँ पर अंधेरा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक पिंक कलर का घर दिख रहा है मकान दिख रहा है यल्लो कलर का भी मकान दिख रहा है हमें यहाँ पर सीढ़ियां दिख रही है रोड दिख रही है।

हमें यहाँ पर बहोत सारे फत्थर दिखाई दे रहे है हमे यहाँ पर थोड़ी सी आती हुई रोशनी भी दिख रही है हमें यहाँ पर --